नमस्कार customizing diagram layout के इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे: reaction line के in आकार एवं चौड़ाई को बदलना
anchor points को reaction line से जोड़ना components को अलाइन करना reaction ids दिखाना/छिपाना
हम यह भी सीखेंगे : components में notes जोड़ना protein को edit करना जानकारी edit करना
और diagram का एक बर्ड्स a view प्राप्त करना
इस tutorial को record करने के लिये मैं ubuntu linux os 1404 celldesigner version 43 java version 17 का प्रयोग कर रही हूँ
इस tutorial पर आगे बढ़ने के लिए शिक्षार्थियों को स्नातक स्तर की biochemistry एवं celldesigner इंटरफ़ेस से परिचित होना चाहिए
यदि ऐसा नहीं है तो सम्बंधित celldesigner tutorials के लिए कृपया spoken tutorial website पर आएं
शुरू करते हैं
पिछले tutorials में से एक का assignment थाmethionine biosynthesis के लिए process diagram बनाना
मैं इस tutorial के उदाहरण के रूप में उसी diagram का प्रयोग करने जा रही how और मैं दिखाऊँगी कि इसे कैसे customize करते हैं
celldesigner interface पर जाते हैं
आपको यहाँ methionine biosynthesis के लिए process diagram दिखाई दे रहा है
tutorial को यहाँ रोकें और methionine biosynthesis process diagram खोलें जो अपने बनाया
यदि आपके पास कोई सेव की गयी file नहीं है तो आप दी गई code file से खोल सकते हैं
अब diagram को कस्टमाइज करना शुरू करें
cell designer interface पर वापस जाते हैं
शुरु करने के लिये मैं reaction line की चौड़ाई और रंग बदलूँगी
ऐसा करने के लिये मैं homoserine और succinylhomoserine के बीच state transition का चयन कर रही हूँ
अब main menu bar में component पर जाएँ
और change color & shape विकल्प पर click करें
वैकल्पिक रूप से आप reaction line पर right click करके change color & shape विकल्प चुन सकते हैं
change color & shape named एक dialog box screen पर दिखाई देता है
एक मोटी reaction line के लिये line width को 10 से उच्च value में बदलें
मैं इसे बदलकर 30 करूँगी
reaction line का रंग बदलने के लिये color panel पर जाएँ
color panel में हम एक handle जैसे pointer युक्त color wheel देख सकते हैं
pointer पर click करें तथा दबाए रखें और पसंदीदा रंग चुनने के लिए घुमाएँ
मैं नीले रंग का shade चुनूंगी
इसके बाद रंग त्रिभुज में कहीं भी click करें
अब pointer पर छोटे वृत्त को click करें और छोड़ें
सभी संशोधन करने के बाद apply और फिर ok पर click करें
ध्यान दें कि reaction line अब मोटी और नीले रंग की हो गई है
इसके बाद हम सीखेंगे कि reaction line पर anchor points को कैसे जोड़ेंगे
और anchor pointsreaction lines के चारों ओर घुमाने में क्यों उपयोगी है
इन्हें सही आकार दें और उन्हें draw area में सही स्थिति में रखें
celldesigner interface पर वापस आते हैं
कोई भी reaction line चुनें
हम homoserine और succinylhomoserine के बीच उसी state transition reaction line का चयन करेंगें
इस line पर cursor का प्रयोग करके वह सटीक स्थिति चुनें जहाँ anchor point रखा जाना है
एक बार सटीक point चुनने के बाद right click करें और add anchor point चुनें
आप reaction line पर चुनी गई सटीक स्थिति पर नए जोड़े गए anchor point देंखेगें
मैं आपको दिखाती how कि anchor points एक reaction line को बदलने में कैसे मदद कर सकते हैं
एक नई window खोलें और इसे anchor name दें ok पर click करें
अब gtp/gdp के icon पर click करें
और draw area पर कहीं भी click करें
reaction line पर right click करें और add anchor point पर click करें
reaction line को drag करें और draw area पर कहीं भी drop करें
आगे हम देखेंगे कि draw area पर components को कैसे अलाइन करें
methionine biosynthesis process diagram window पर वापस आते हैं
हाइलाइट की हुई reaction line को अनचेक करने के लिए draw area पर कहीं भी click करें
अब shift की key को दबाकर रखें और draw area पर कई species पर click करें
edit menu पर जाएँ नीचे scroll करें alignment चुनें और alignment type पर click करें
वैकल्पिक रूप से toolbar पर alignment के लिए icon पर click करें
अपने आप toolbar पर अन्य alignment विकल्प खोजें
एलाइनमेंट को अनडू करें और आगे बढ़ें
reaction पर कार्य करते समय हम process diagram पर reaction ids को कैसे दिखा/छिपा सकते हैं
आइए यह सीखते हैं
view पर जाएँ नीचे scroll करें और show reaction id को अनचेक करें
draw area पर संबंधित reaction पर reaction ids अब दिखाई नहीं देंगी
यदि आप reaction id दिखाना चाहते हैं तो निम्न करें
view पर जाएँ नीचे scroll करें और show reaction id पर click करें
reaction ids draw area पर संबंधित reactions पर दिखाई देंगी
हम draw area पर सभी components compartment species या reaction में notes जोड़ सकते हैं
आइए इसे करना सीखते हैं
draw area पर एक species पर right click करें
मैं coa पर click करूंगी
नीचे scroll करें और species notes पर click करें
एक pop अप menu दिखाई देता है
species notes नामक dialog box खुलता है species से संबंधित text type करें
मैं निम्नलिखित type करूँगी
ok पर click करें
ध्यान दें कि notes संबंधी जानकारी को notes area में दिखाया गया है
वैकल्पिक रूप से species में notes जोड़ने के लिये draw area में एक species पर click करें
मैं succinate पर click करूँगी
इसके बाद celldesigner window के निचले दाएं कोने पर स्थित edit notes टैब पर click करें
एक pop अप window खुलेगी
species से संबंधित text type करें
मैं type करूँगी एवं ok पर click करूँगी
इसी तरह हम एक protein को edit कर सकते हैं
ऐसा करने के लिए draw area पर एक component पर right click करें
मैं homoserine succinyl transferase पर click करूँगी
नीचे scroll करें और edit protein पर click करें
screen पर protein नामक एक dialog box दिखाई देता है
name box में protein का name दर्ज करें
मैं name box में osuccinyltransferase type करूंगी
update पर click करें और dialog box बंद करें
हम एक protein में क्षेत्र भी जोड़ सकते हैं
draw area पर एक protein पर right click करें
मैं osuccinyltransferase पर right click करूँगी
नीचे scroll करें और edit protein पर click करें
screen पर protein नामक एक dialog box दिखाई देता है
residues/regions टैब के अंतर्गत add button पर click करें
modificationresidue/bindingregion dialog box में:
drop down menu से type में binding region चुनें
cursor को आवश्यक value पर मूव करके आकार एवं कोण बदलें
इस demo के लिये size 15 और angle 38 चुनूँगी
फिर close पर click करें
update पर click करें
और box बंद करें
चूँकि हमें methionine biosynthesis में क्षेत्र जोड़ने की आवश्यकता नहीं है मैं इन परिवर्तनों को अनडू करुँगी
फिर हम जानकारी को edit करना सीखते हैं
draw area पर component पर right click करें
मैं homoserine पर click करूँगी
नीचे scroll करें और edit information पर click करें
screen पर edit information नामक dialog box दिखाई देता है
dialog box में निम्नलिखित करेंstate टैब के अंतर्गत open चुनें
prefix टैब के अंतर्गत mt चुनें
label टैब के अंतर्गत dna चुनें
ok पर click करें
आप draw area पर दिखाई देने वाली जानकारी mt: dna देख सकते हैं
मैं edit information को अनडू करुँगी क्योंकि हमें methionine biosynthesis में इसकी आवश्यकता नहीं है
कुछ स्थितियों में process diagram जटिल हो सकता है
ऐसी स्थितियों में bird s eye view मदद कर सकता है क्योंकि एक बड़े model के अन्दर navigate करना आसान है
bird s eye view icon पर click करें
birds eye view में red square को खींचे
ध्यान दें कि draw area पर द्रश्य उसके अनुसार चलता है
यह tutorial यहीं समाप्त होता है
इसे सारांशित करते हैं इस tutorial में हमने सीखा : reaction line का in आकार एवं चौड़ाई बदलना
anchor points को reaction line पर जोड़ना components को अलाइन करना reaction ids दिखाना/छिपाना
हमने यह भी सीखाcomponents में notes जोड़ना
protein edit करना जानकारी edit करना
और diagram का birds eye view प्राप्त करना
assignment के लिए सेलडिज़ाइनर में tools का उपयोग करके एक glycolysis process diagram बनाएँ
reaction line की विभिन्न आकृतियाँ खोजें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
spoken tutorial project teamकार्यशालाएं आयोजित करती है तथा online test pass करने वालों को प्रमाण पत्र प्रदान करती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact @spokentutorial org पर जाएँ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
यह ट्यूटोरियल this अमित कुमार द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ